इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सोफे रखें हुए हैं।

यह एक स्कूल है जिसके अंदर बो एक बोर्ड पर बहुत अच्छे से सजावट कर रखी है।

और साइड कि ओर कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

और पीछे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर स्टेज है जिसके ऊपर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और साइड में कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर कुछ सोफे और कुछ बेंच रखी हुई है।

एक बेंच पर एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

और साइड में कुछ मकान भी बने हुए हैं।

जिसकी साइड में कुछ एक्टिवा भी खड़ी हुई है पीछे की ओर एक पेड़ भी खड़ा हुआ है।